जहां पर पीछे ब्लैक बोर्ड पर--

और कुछ मछलियां पीले कलर के कार्ट में रखी हुई है।

और इसके पास में काफी सारे पेड़ पौधे खड़े हुए है।

स्कूल्स के पास में एक इमारत भी बनी हुई है।

और अंदर काउंटर पड़ा हुआ है कुछ कुर्सियां में पड़ी हुई है।

और आस पास कुछ भी है।

जो हाथ में फोन लेकर बैठा है जो कुछ कर रहा है।

बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।

और इस दुकान के अंदर काफी सारे बॉक्स बने हुए हैं।

और यहां पर आस पास काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और यहां पर काफी सारे बच्चे हैं।

और एक घड़ी भी टंगी हुई है रूम में।

और कुछ बच्चों ने अपने हाथ उठा रखे हैं।

एक पंखा भी लगा हुआ है।

वो टेबल रखी हुई है।

वो जनता बाहर खड़ी है गेट के।

इसमें काफी सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

यह एक होटल है जहां पर काफी सारे--

ब्लू कलर का पेंट हो रखा है।